आमने की ओर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

दाईं तरफ बहुत सारे बिस्किट रखे हुए हैं।

ऊपर शेड है जो लाल रंग के हुआ है और सामने दो लोग खड़े हुए हैं।

यहां कांच के अंदर बहोत सारी ज्वेलरीस रखी हुई है।

इस तरफ एक औरत फोन पे बात कर रही है।

हमने एक पीले और काले रंग का टेंपो भी दिखाई दे रहा है।

ये किसी रोड का दृश्य है जहां बाहर रॉयल कैफे लिखा हुआ है।

जहां दोनों तरफ पिलर लगे हुए हैं। पिलर पर फूल हैं।